और यहां पे जो है एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहन के हाथ में मोबाइल लेकर के फोटो खिंचवा रहा है पीछे बैग है उसके।

और यहां पे जो है चारों तरफ से--

और यहां पे बहोत सारा पेड़ लगा हुआ है और--

यह जो है एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल जो है यहां पे तीन खिड़कियां हैं।

और यहाँ पे जो है बहुत सारे अ लेडिस और जेंट्स है गोदी में बच्चे हैं और सामने में केक --

ये रोड है रोड के किनारे जो है।